और साथ में एक दीवार के साथ गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है।

के साथ सजाया गया है और एक गाड़ी लगी हुई है।

कुछ रैक पे छोटी छोटी बोतले भी भरी हुई है कुछ पाँच लीटर की दस लीटर की भरी हुई है जे गाड़ियों में डालने वाले इंजन ऑयल है।

बहुत सारे मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जैसे व्हाइट हाउस जैसा इसके आगे बहोत बड़ा रास्ता दिखाई दे रहा--

और कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रहीं--

जैसे सनमाइका रखा हुआ है और डिब्बों में बंद पैक कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां मोटर मैकेनिक का समान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा--

यहां इसकी एक साइड पे दीवार पे शेल्फे बनी हुई हैं।

फुट वियर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक मॉल का पिक दिखाई दे रहा है यहां खाने पीने का सामान बंद पैक डब्बों में रखा हुआ है।

और एक रैक पे बहुत सारी ऑयल की बोतले रखी गई है और मसाले वगैरा रखे गए हैं।